लगाया गया है। और इसके बगल में टावर उगरा है।

सरकारी हॉस्पीटल का दवा मिल रहा है।

लाल पीला हरा ब्लू बैगनी हर कलर का मिल रहा है।